सामने पर्दे है जो सफेद रंग के और यहाँ पे कैमरा स्टैंड भी रखा है और सोफे रखे हुए हैं।